ये रिद्धि सिद्धि दुकान है कपड़े की दुकान जो की जामताड़ा --

प्लेयर लोग फुटबॉल खेलने आते है।

काफी अच्छा होता है पुल--

जो कि काफी खूबसूरत बनाया गया है।

काफी लोगों को इनवाइट किया जाता है।

लोग सेलिब्रेट करते है अपने जन्मदिन को लोगो के साथ |

इंडिया का एटीएम है एनी टाइम मनी --

ये जामताड़ा सतसाल का पुल है।

ये जामताड़ा आई.आई.टी कॉलेज है।

क्योंकि काफी अच्छा है। पानी भी काफी साफ़ है।